यह दृश्य एक कमरे का है जहाँ एक व्यक्ती एक दुसरे व्यक्ती की मसाज --

लगाया गया है और वहाँ अनेक बच्चें व्यक्ती और महिलाए एकत्रित हुई है।